वाइट कलर का मकान दिख रहा है उसमें जामुनी कलर भी दिख रहा है नाम लिखा हुआ दिख रहा है लाइटें लगी हुई दिख रही हैं खिडकियाँ दिख रही हैं एक सिर दिख रहा है।

क्रीम कलर दिख रहा है मैदान में पिंक कलर दिख रहा है भाइट कलर से लाइन खिची हुई दिख रही है दीवार में पिंक कलर पीला कलर ग्रीन कलर दिख रहा है फूल बने दिख --